इस फोटो के अंदर मुझे बहोत सारा किसम किसम का बाइसाइकल नजर आ रहा है।

कुछ मीडियम साइज वाले हैं और कुछ स्मॉल साइज वाले किड्स लोग के लिए--

और मुझे एक इंसान भी नजर आ रहा है।

बीच अंब्रेला नजर आ रहा है।

इस फोटो के अंदर पर मुझे बहुत सारा कार्स नजर आ रहा है।

इस फोटो के अंदर पर मुझे दो इंसान बात करते हुए नजर आ रहा है।

और मुझे कुछ फ्लावर पॉट भी दिखाई दे रहा है।

जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज करता है एंगल मेजरमेंट ।

और बहुत सारा मुझे ट्रीज भी नजर आ रहा है।

ऑरेंज स्टूल्स भी दिखाई दे रहा है और मुझे एक फ्लैग भी दिखाई दे रहा है।

और बोट का कलर मुझे बहोत अलग अलग कलर दिखाई दे रहा है।

और मुझे बहुत सारा लाइफगार्ड भी --

और मेन रोड के ऊपर मुझे बहुत सारा व्हीकल नजर आ रहा है।

जोकि ऑटो है और स्कूटी है।

जिसका कलर व्हाइट और रेड नजर आ रहा है।

मुझे बहोत सारे इंसान डांस करते हुए भी नजर आ रहा है।

और एक मुझे मिनी फ्रिज भी दिखाई दे रहा है।

जो की ये है येलो ऑरेंज ब्लू व्हाइट ।

और मुझे कुछ पोस्टर्स भी दिखाई दे रहा है।

और मुझे बहोत सारा व्हीकल्स नजर आ रहा है।

और मुझे एक फ्लाई ओवर भी नजर आ रहा है और फ्लाईओवर के कॉर्नर पर मुझे--

इस फोटो के अंदर मुझे तीन मु मुर्गी नजर आ रहा है।

और मुझे दो नल भी नजर आ रहा है।

और मुझे कुछ कोकोनट के छिलका भी नजर आ रहा है।

और मुझे एक टेंट भी नजर आ रहा है जिसका कलर ग्रीन है।

और बहुत सारा चिप्स है और न्यूट्री चॉइस का बिस्किट है और अनिक घी है।

और मुझे एक जेट फाइटर भी नजर आ रहा है जो की एक रेप्लिका का है।

और गुलाब के ऊपर पर मुझे बहुत सारा वाटर का ड्रॉपलेटस भी नजर आ रहा है।

यहां पे इसके सामने कुछ पत्ता दी है ले रहा है।

उसके ऊपर में एक फोटो फ्रेम है उसके और ऊपर में फोटो फ्रेम दो फोटो फ्रेम है।

और सोफा के ऊपर में अ बेडिंग है तोशक है रेड कलर का उसके ऊपर में कपड़ा है।

ब्लैक कलर का कुछ सामान रख के है वहां का कलर व्हाइट है।